में ये जो दुस है पीछे एक सूंदर सी सजा हुआ एक रथ सजा हुआ है पीछे एक झांकी सुंदर सी सजी हुई है।

ओर लोग फोटो निकलाते हुए दिख रहे है उनके पीछे सूंदर सा एक गेट सजा हुआ है।

जे मिट्टी बिछी हुई है हरीं आसपास दीवारों पर शोकेष बने हुए है शोकेष में कुछ समान रखा हुआ --

हॉल में ये क्रिसमस का प्रोग्राम में कुछ बच्चे प्रोग्राम करते दिख रहे हैं।

का लिखा हुआ है के डबल ए ऑरेंज --